एक बड़ा सा हाल ही इसके ऊपर टेंट लगाया गया है जो की कपड़ा का टेंट ही इसका रंग कुछ पीला सफेद सा हैं बड़े-बड़े लोहे के यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं ।